इसमें एक दो तीन पिल्लोस भी रखे गए हैं और दीवार के पीछे दो पेंटिंगस लगाई गई हैं।

एक एलेक्ट्रोनिक की दुकान है जिसमे टीवी बेचा जाता है। यहा पर हर तरीके के छोटे बड़े एलसीडी एलईडी सब उपलब्ध है।

मशीन रखी गई हैं। जिससे कि इसकी सर्विसिंग की जाएगी।

इसमें कुछ गाड़िया भी खड़ी हैऔर आस पास बिल्डिंग्स भी है।

ये एक रोड है जिसमें की बोहोत ही ज्यादा जाम लगा हुआ है।

ए खाली सी जगह है जिसमें सुखी हुई घास है।

रोड पर भी नीली और सफेद कलर की गाड़ी चल रही है और ये बिलकुल साफ सुथरी सड़क लग रही --

ये एक मैकेनिक कार को सही कर रहा है। गाड़ी में कुछ खराबी होने के कारण मैकेनिक इसकी मरम्मत कर रहा है। ये सफेद कलर की गाड़ी है।

यह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। जहां पर वाशिंग मशीन हर तरह की --

यह खिलौने की दुकान है जिसमें रंग-बिरंगे अलग-अलग किस्म के खिलौने रखे गए हैं इसमें गुड़िया बैट बच्चों के वीडियो गेम हर तरीके के खिलौने उपलब्ध हैं।

यह एक ऑफिस है। जिस पर सारे कर्मचारी लड़का लड़की बैठकर कुर्सी पर --

आराम से अपना काम कर रहे हैं | सबका छोटा-छोटा सा एक डिपार्मेंट टाइप का बनाया हुआ है।

एक खाली मैदान है ये शायद एक पार्क है क्योकि यहाँ पर छोटे छोटे झूले भी हैं।

यह एक ऑफिस है और बगल में कंप्यूटर और उसका माउस रखा हुआ है और एक खाली पेपर पेन और स्टेपलर भी रखा हुआ है।